बहुत सारे बच्चे है जो की बेट कर रहे हैं चिप्स कुरकुर है एक लरका है जो की वाइट शर्ट ब्लेक पेंट ब्लाक चप्पल पहने है कुलिया टाइप में खड़े है जो की बहुत सारे पेड़ लगे हुए है और घर भी बने हुए है।